ई इसमें कई सारे मकाने है और इसकी खिरकी रेड कलर की है सिरी सीढ़ी--

स्कूटी है एक मोपेड है और कई सारी बाइक है।

पैरेट कलर का है वहां एक आदमी एक फोन पर बात कर रहा है अं जी जिप्सी का नाम--

यह एक बंगला है बंगले के बाहर गा अ बंगले के बाहर स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल --

ये है और और एक ये येलो कलर का गार्डेन टाइप से बना हुआ है वहां भी--

बाइक लगी हुई है जिसमें से एक स्कूटी है एक चाचा हाथ में छाता ले के जा रहे हैं।

यह एक बर्ड है बर्ड का कलर ब्लू है और बर्ड एक जंगल में है जंगल--